ये कोई सरकारी भवन है गाइज और ये मेन गेट है। वहां पे एक ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पे बहोत सारे लोग है गाइज़ और कुछ लेडीज भी है और एक अ दो बिल्डिंग नज़र आ रहा है गाइज़ --

हैलो गाइज ! ये किसी मार्केट का फोटो है गाइज जिसमें दो व्यक्ति एक साइड में खरा है दो एक साइक में खरा हैं बीच में एक मोटरसाइकिल ख है रेड कलर का।

व्यक्ति है जो रेड शर्ट मे हैऔर वो चाबी दे रही है किसी एक महिला को जो रेड कलर की साड़ी पहन के पेहनी (पहनी) हुई है और उधर एक स्कूटी भी नज़र आ रहा है गाइज़ --

ये किसी बिल्डिंग के अंदर का फोटो है गाइस यहां पे एक केबिन बना हुआ है।

और इसमे शायद क् काम किया जा रहा है जो कन्स्ट्रकशन का काम किया जा रहा है। इसको रिपेयरिंग किया जा रहा है और इसकी पट्टी है रेड कलर की।

एक कैंची दिख रहा है यहाँ पे और फायर एक्सीस्टर भी दिख रहा है गाइस साइड में एक लड़का है उसके हाथ में एक ब्लू कलर का फ़ोन है। उसके सर पे कुछ लगा हुआ है।

एक बहुत बरा खंभा भी नजर आ रहा है यहाँ पे और सामने में एक गोल तरह का बिल्डिंग नजर आ रहा है गाईस जोकि काफी खूबसूरत लग रहा है।

हेलो गाइज ! ये किसी प्रोग्राम हो रहा है गाइस और इसका पंडाल को किसने खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। लकड़ी का बिल्कुल ब्राउन कलर का ह --